सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध है वाजिब दाम पर यहां पर सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं यहां पर सभी प्रकार के कलर उपलब्ध है।

सामने एक बस का नजारा दिखाई दे रहा है जिसके आगे की साइड एक ड्राइवर खड़ा है।

यह कहीं सार्वजनिक जगह पर चलने वाली बस हो सकती है जो लंबे रूट के लिए चलती हैं।

सामने एक घर के अंदर चौक का नजारा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी सोफा सेट लगी हुई है और --

और कुछ लड़के और लड़कियां भी हैं और मैडम जी बीच में खड़े रहकर बच्चों का टेस्ट में सक्षम कर रहे हैं।

जहां पर कुछ लोग अपना समान उतार रहे हैं और एक व्यक्ति सामने खड़ा होके फोटो शूट कर रहा है।

जहां पास में एक लेडी बैठी हुई--

यह एक जंगल में बना हुआ झरना हो सकता है यस बहुत ही सुंदर दृश्य है।

जिसके अंदर सभी प्रकार की साइकिले स्पोर्ट बोतले स्पोर्ट कपड़े स्पोर्ट जूते सभी प्रकार की वस्तुएं वाजिब दाम पर उपलब्ध है।

बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहां की ब्लैक कलर की सीटे लगी हुई है और ऊपर एक डायलॉग लिखा हुआ है रीड नाउ ग्रो --

सामने एक अमूल डेयरी का नजारा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सभी प्रकार की डेयरी --

बाइको के एलॉय व्हील व कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की दुकान का नजारा दिखाई दे रहा है।

सामने एक रेस्टोरेंट का नजारा दिखाई दे रहा है जो एक रेस्टोरेंट के साथ साथ कोई--

वक्ती वापस जा रहे हैं दही वगैरह ले के--

पुरस्कार के बैनर भी ऊपर लगे हुए हैं दीवार पे ए_सी लगी हुई है कांच का --

एक बहुत बड़े बाजार का नजारा दिखाई दे रहा है जो कोर्ट गेट बाजार बीकानेर में स्थित है।